गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है जो नई गाड़ियों का शोरूम है यहाँ पर तीन-चार गाड़ी रखी हुई है एक टेबल भी रखी हुई है कुर्सी भी रखी हुई है।

वहाँ एक आदमी अपने हरी पत्ती वाले पौधे भी रखे हुए है उनके बीच मे खड़ा हुआ है पाँव रखा हुआ है उसके सामने बॉक्स भी रखा हुआ है उसके सामने शटरे भी दिख रही है।

मुह तू मास्क लगा है दूसरी आदमी के पाँव की चप्पल भी दिख रही है ।

नहाने वाले रखे हुए है जो सेट होते है मकानों मे टंकियों मे कटिंग किए जाते हैं।

एक बड्डी सी दुकान दिखाई दे रहीजिसमे एक लड़की का चित्र बना हुआ हैउसके सामने बेग टंगे हुए पंखे भी लगे हुएबल्ब भी लगे हुए है टाइल्स बिछी हुई हैस्टूल भी लगे हुए है ।

छोटे-बड़े कंकड़ भी दिखाई दे रहे है पहाड़ पर भी वृक्ष लगे हुए जो काले नजर आ रहे है।

पीछे भी फोटो दिख रही है एक बाप्सी बल्ब भी डली हुई है और नीचे भी एक शटर लगी हुई दिखाई दे रही है ऊपर पंखे भी नजर आ रहे है ।

पहाड़ है पहाड़ के बीच मे से पानी की धार आ रही है पहाड़ एक बहुत ऊंचाई का दिख रहा है।

पहाड़ सूखी और कुछ सूखे पेड़ वाले देख--

येह.. सामने से केले टंगे हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी भी बैठा है।

सामने से मकान बने हुए दिखाई दे रहे जिनपे कपडा टाइप के छाया है।